एहा रतिहा के समय कहूँक ले दिखत हे पहाड़ ह धुंधला धुंधला दिखत हे करिया करिया अऊ एको दु ठ घर ह दिखत हे।